उन दोनों की कलर वाइट कलर की है।

जिसमें कुछ पानी रुकी हुई है।

यहां पे एक खंभा लगा हुआ है।

एक अ बंबू रखा हुआ है जो कि सूखा हुआ है।

और यहां पे बहोत सारे अ अ पत्थर है।

एक बहोत बड़ी मिरर --

और इसके आगे एक इंसान खड़ा हुआ है।

इस वि अ इस पिक्चर मे दिखाया गया है कि यह एक बड़ी बिल्डिंग है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि--

जिसमें बहुत सारे खेल खेलने वाले चरखी वगैरा लगे हुए--

यहां पे एक इंसान अंदर खड़ा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारी झाड़ियां सूखी हुई हैं।

कुछ पेड़ है यहां पे।